जिसमें चार-चार लाइटें हैं एक खम्भे पर।

तम्बू के पीछे बड़े-बड़े पेड़ हैं।

जिसमें कुछ पाइप दिख रहें हैं।

उसके बराबर में काले कलर का किबोर्ड भी रखा हुआ हैं।

जो कि की किसी डिब्बे पर बैठी हुई है।

जिसमें एक लड़के ने मास्क पहना हुआ है।